ये इस खेतों खेत के बीचो-बीच में एक खम्भा है जो लोहे का है।

इस पंडाल के अंदर बहोत लोग --

ये पड़ोस में एक स्कूटी है जो काले रंग की दिख रही --

इसके आगे बहोत सारी बसें खड़ी हुई है जो रंग बिरंगी हैं।

यहाँ पे एक खम्बा लगा हुआ है। जिस पे एक मरकरी लगी हुई है।

यहाँ पे लाइटें लगी हुई हैं।

और यहाँ पे एक दो खंभे लगी हुई है। जिन पे मरकरी लगी हुई है।

जो बहोत ही बड़ा है। यहाँ पे एक मीटर लगा हुआ है।

यहाँ पे बहोत सारी लाइटें रंग बिरंगी जल रही हैं।

यहाँ पे बोहोत सारे झूले भी हैं। भी है।

इसके बाहर एक दो कार खड़ी हुई हैं जो सफ़ेद रंग की है।

यहां पे कुछ लोग आपस में बात कर रहे हैं और कुछ बच्चे खेल रहे हैं।

इस्कूल के आगे एक गार्डन है जिसमें चार-पांच बच्चे अपनी फोटो --

यहाँ पे एक लकड़ियों का गट्ठर लगा हुआ है जिसके ऊपर एक मोर है।

यहाँ यह एक रूम है जिसके अंदर एक अलमारी रखी हुई है जो लकड़ियों की बनी है।

इस बैंक के ऊपर डी.टी.एस दिख रही हैं।

इस मैदान में बहोत लोग बैठे हुए हैं।

वहाँ पे एक बहोत बड़ा पोस्टर लगा हुआ है। इसके आगे एक मेज पड़ी है।

यह एक कॉलेज है जो बहोत ही बड़ा है। यह पीले रंग का दिखाई दे रहा है।